स्कूल में बच्चे अपनी-अपनी एक्टिविटीज करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

तालाब के आसपास घास लगी हुई है।

यह तस्वीर एक स्टेडियम की है।

यह दृश्य एक कार का है।

गार्डन में एक स्टेज लगा हुआ है।

इस तस्वीर में हमें दो मजदूर घर बनाते हुए दिखाई दे र--

येह तस्वीर एक कबाड़ी वाले की दुकान की हैं।

साड़ी पिछली तरफ से भी खुली हुई दिखाई दे रही है।

गमलों में अलग-अलग रंगों के फूल लगे हुए है।

दो औरतें चेयर पर बैठी हुई दिखाई दे रही हैं।

यह तस्वीर एक गार्डन की हैं।

यहां पर बड़े बड़े पेड़ भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

बहोत लोग पौधे लेने के लिए आए हुए है।

रोड पर आगे चल कर टूल टैक्स भी ब--

यह तस्वीर एक कोल्ड्रिंक बेचने वाली दुका--

यहां पर शेल्फ में हमें बहोत सारी मिठाइयां पड़ी हुई दिख रही--

यहां पर हमे बहोत सारा फ्रूट पड़ा हुआ दिख रहा--

सोफे पर एक लाल रंग का टेडी बियर भी पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।